सामने खुला सा मैदान दिख रहा है जो की बहोत बड़ा जिसकी जमीन पे कुछ मिट्टी नजर आ रही है कुछ छोटे-छोटे से पौधे लगे हुए नजर आ रहे हैं।

और सामने एक स्टेडियम नजर आ रहा है जो की बहुत बड़ा-सा दिख रहा है इसके अन्दर कुछ लोग इधर खड़े हैं कुछ लोग ग्रुप बनाके खड़े है कुछ लोग साइकिल चला रहा है साइकिले खड़ी है एक रेड कलर की बस खड़ी हुई नजर आ रही है।

हमारे सामने एक रेलवे स्टेशन है जो की बहुत बड़ा सा दिखया जा रहा है| रेलवे स्टेशन के दीवार से पिक ग्रीन कलर ऑरेंज कलर का पेट पुता हुआ है।